दो तीन चार बोर्ड लगाए गए है एक पर्पल कलर का बोर्ड यहाँ पे दो तीन पाइप लगाई गई हैं उसमे लाल फीता बांधा गया है।

यहाँ पे ढेर सारी लोहे की औज़ारे रखी हुई हैं नीचे में ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया हुआ है।

सामने में एक एक पर्दा लगा हुआ है इसमें ढेर सारी रोशनी है यहाँ पे ब्लैक ब्लैक चेयर रखा हुआ है टेबल पर टिश्यू पेपर रखे हुए--

और दूर-दूर तक बस पेड़ ही पेड़ दीख रहें हैं यहाँ पे पानी जो की बहुत ही जमा है।